इधर एक बड़े रूम है रूम के पास टेबल्स है।

चेयर्स है एक सर है मास्टर के भी

देखने के बोड के पास व्हाइट कलर का भी डिजाइन है।

बड़े वाल है बड़े घर हैं छोटा घर हैं घर के पास डिजाइन का पेंट का अ भोमांस है।

इधर एक बड़े लम्बा रोड है दो बाइक्स है दो बोर्ड्स है।